और खंभा भी दिखाई दे रहा है।

बहोत अच्छी इंग्लिश में वेलकम लिख रखा है।

यहां खेतों में कुछ पेड़ खड़े छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं।

यह गाड़ी ठीक करने की दुकान है।

कंपूटर में काम कर रहा है।

और खाली ग्राउंड भी नजर आ रहा है आसमान में बादल छाए हुए हैं।

यहां बहुत अच्छा बाजार लगा हुआ है।

बहुत अच्छी दुकान नजर आ रही है।

खेत में पड़ा दिखाई दे रहा है।

गोल-गोल चक्की और लोहे के पाइप खाली खेत नजर --

यहां फैक्ट्री नजर आ रही है।

एक टांपो भी बहोत बड़ा खड़ा है।

यहां फॉर्म सा नजर आ रहा है।

दिखाई दे रही हैं और लोहे के बड़े बड़े सरिये भी नजर आ रहे हैं।